यह एक होटल का फोटो है होटल में तीन इंसान बैठे हुए है जो कि बैठकर खाना खा रहे।

यहाँ पे एक पोस्टर लिखाया गया है जिस पर लिखा गया है गूड फूड गूड मूड --

दीवाल के ऊपर बहुत सारे बल्ब को जराया जा रहा है जो देखने को --

चौरानवे सोलह दो सौ तैतीस एक सौ दो जो देखने में अच्छा लग रहा है यहां पे बहुत सारे जूते को रखा गया है।

इसमें पाइप लगाया गया है जोकि मिट्टी कलर का पाइप लगाया गया है यहाँ पे --

यहां पे येलो कलर का पंडाल बिछाया गया है यहां पे कुछ लिखा गया है जो देखने में और भी अच्छा लग रहा है।

धरती पे बिछाया गया है जो कि ग्रीन कलर का बिछाया गया है उस पर लड़कियाँ से डांस कर रही है जो देखने में कु --

यहाँ पे एक हिरण जोकि बहुत ही बरा है जोकि येलो कलर का हिरन है इसके पास बहुत ही बरा बरा सिंघा है।

यह एक ऑफिस का फोटो है ऑफिस में ब्लैक कलर का चेयर लगाया गया यहां पे एक इंसान है एक फैन है एक तिरंगा है जो देखने में खूबसूरत है।

नारंगी जो देखने मे खूबसूरत और होता यहां पे दरवाजा लगाया गया जो दरवाजा लकरी का है येलो कलर का दरवाजा है दे--

यहां पे खेलने वाला भी बनाया गया है जो कि यहां पे दो इंसान है एक लड़कीयां है एक है।

यहाँ प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे बहुत सारे लड़का लड़कियाँ लोगे यहाँ पे एक मैम हैं जोकि स्टेज पर बैठकर कॉम्पी रखे हुए है।

अंशन करने के लिए जो देखने में खूबसूरत और अच्छा है।

दो इंसान हैं जोकि एक इंसान रेड कलर शर्ट पहने हुए ब्लू कलर का जींस पहने हुए एक इंसान ब्लैक कलर का जीन्स --

यहाँ पे अच्छा तरीका से सजाया गया है रेड व्हाइट कलर के बैलून से सजाया गया है।

यह एक सोना के दुकान का फ़ोटो है यहां पे दो इंसान बैठे हुए हैं जो कि रेड कलर का जैकेट पहने हुआ है एक इंसान जो कि वाइट कलर का पहने हुआ है।

यहाँ पे दो कैमपुटर को रखा गया है जो ब्लैक कलर का कैमपुटर है यहाँ पे शीशा लगा हुआ है शीशा में बहुत सारे सामान दिखाया जा रहा है।

रेड कलर का गमछा बने हुए। मोबाइल से बात कर रहा है। उसके पीछे घर है।

यह एक पार्क का फोटो है पार्क में के स्टैचू बनाया गया है जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है ग्रीन कलर का ड्रेस पहने हुआ है।

बैग का कलर ब्लू है यहाँ पे रेड कलर का बिछोना किया गया है यहाँ पे --

यह एक जिम क्लास का वीडियो है जिम क्लास में दो जिम को लगाया गया है यहाँ पे एक हॉल है हॉल में चटाई को बिछाया गया है जो ग्रीन कलर का चटाई है।

यह एक खाटू श्याम मोबाइल का दुकान है जिसमें बहुत सारे बल्ब को लगाया गया है यहाँ पे मोबाइल का --

बहुत सारे फैन को लगाया गया है जो देखने में खूबसूरत और अच्छा लग रहा है ब्याज पर फोन लोन दिया जाता है यहां से देखने में खूबसूरत और अच्छा नजर आ रही--

यह घर के बालकोनी का फोटो है घर के बालकोनी के बाहर जोकि बाइक लगे हुए--

यह एक कॉलेज का फोटो है कॉलेज के बाहर एक पौधा लगा हुआ है यहां पे बहुत सारे येलो कलर का घर है।

जो देखने में अच्छा और खूबसूरत है यहाँ नजारा देखने में अच्छा है जो देखने में और भी अच्छा है।

और खूबसूरत लग रहा है जो देखने में बहुत ही अच्छा सुंदर और खूबसूरत --

यहाँ पे दो चार एक बाइक लगा हुआ है जोकि चार स्कूटी है एक कार है।